बोर से ऐसी लाभ हो तई लेकिन बहुत अच्छा काम करत बड़न पाइप लाइन वाला पाइप लगल हई आदमी बड़न अपन काम करत बड़न जेसन भी बड़न बहुत अच्छा बा कॉन्फी मिस्त्री बा बहुत अच्छा करन बहन--

एक दूसरे के सहयोग हुआत बनी ना बहुत आच्छा बनईले बा बहुत खर्चा करके बनई ले हो तइ--

बहुत ही अच्छा दुकान बनाई ले बा जैसा भी बा बहुत अच्छा बा और अच्छा दिखत था जगह भी बहुत अच्छा बा--

कोई औरत भी वाहनी और एक ल -- लड़का भी वाहनी जो की बहुत अच्छा दिखत --

बहुत ही अच्छा जगह दिखत हवा इहा सिला पुर ढ़लाईले हई सरिया भी खड़ा हवा लगत ह इ दूसरा रूम बंतउ--

लगत है हमारा टोपी पहिनले हाउ एक झन मिया हाउ बहुत ही अच्छा जगह से दुकान कईले वहन और अच्छा हाउ आदमी बड़न बहुत बेचत है औरत भी बाहनी।